ये एक घर है इधर से छत पे चढ़ना वाला सीढ़ी है इधर गेट है यहां खिड़की है।

ये मिर्ची है और ये मटर है ये गोभी है ये टमाटर है।

बाहर बहुत सारा ठेला साइकिल रिक्शा लगा हुआ है बाइक लगा हुआ है।

ये एक एस स्कूल है और इधर भी एक --

और बहुत सारा दवाई सब है और इधर भगवान का फोटो लगा हुआ है।